जो बैठी हुई है और ऑटो खड़ी हुई है अगल-बगल हरे पेड़-पौधे भी है बादल सफ़ेद काले है।

पंखे लगे हुए हैं ऐ_सी भी लगी हुई है और सामने एक लड़की का जो एक लड़का बाल कट कर रहा है।

एक-- बड़ा- सा तालाब है जिस तालाब में पानी भरा है और सीढ़ियाँ बनी हुई है जिस सीढ़ी के पास एक लड़का खड़ा हुआ है पानी देख रहा है और अगल-बगल कुछ पेड़- पौधे दिख रहे हैं बादल सफेद है--